इस पिक्चर को देख के लग रहा है की ये औरत --

यहाँ पर लोग खेल के एंजॉय कर रहे है यहाँ पर बहुत सारी हरियाली है यहाँ तरफ पेड़ ही पेड़ है और यह बीच में दृश्य है जो बहुत ही खूबसूरत लग--

इस तस्वीर मे नज़र आ रही की एक सामने एक राइड है जो बहुत ही अच्छी लग रही है यहाँ पर कोई और नही है यहाँ पर जम्पिंग वेट भी है जो बहुत अच्छा लग रहा है हर तरफ हरियाली-हरियाली--

इस तस्वीर मे नज़र आ रहा है की चारो तरफ पत्थर ही पत्थर है और इस पत्थर में यहाँ पर मूर्तिया बनी हुई है जो अलग अलग लोग--

इस पिक्चर को देख कर ऐसा लग रहा है की ये लोग माइक पे कुछ बोलना चाह रहे है और ए माइक और ए दृश्य बहुत खूबसूरत लग रही है ऐसा लग रहा है की ए लोग यहा पर भाषण दे रहे--

इस तस्वीर मे देखे तो यहा पर एक मूर्ति रखी हुई है जिस मूर्ति के नीचे पाँच से छह तस्वीरे लगी हुई है ये बहुत युनीक लग रही है इधर उधर डेकोरेशन करी हुई--

जो बहुत अजीब लग रही है और चारों तरफ बाग़ रखा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे मं बहुत सारे रखे हुए हैं बहुत अद्भुत और अजीब लग रहा है ये ।